यह पिक्चर के_एफ_सी के अंदरूनी हिस्से को दर्शाता है इसमें कई मेजे और लाल कुर्सियां दिखाई दे रही है।

यह पिक्चर एक इनडोर सेटिंग को दर्शाता है जिसमें एक बड़ा सा आयताकार ढांचा है।

यह पिक्चर एक मछली घर या एक्वेरियम को दर्शाती है इस दुकान में कई मछली टैंक लगे--

यह पिक्चर किसी घर की छत के दृश्य को दर्शाता है।

बाद जिले के रेलवे स्टेशन या हवाई अड्डे के बाहर के दृश्य को दिखा--

जो संभवतः यह एक खेल का मैदान है।

पिक्चर अमृतसर में स्थित गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी सहित के आंतरिक भाग को दर्शाता--

जैसे झूले और स्लाइड्स दिखाई दे--

मे आयोजित कार्यक्रम प्रतीत हो रहा है।

यह किसी धार्मिक आयोजन का दृश्य प्रतीत होता है यहां कुछ लोग एक रूम --

में और अन्य वस्तुएं रखी है कमरों की दीवारों पर--

और परिवारों की सुनिश्चित हुई बेहतरी लिखी हुई है।

ये एक ग्रीन कलर की बहुमंजिला ईमारत दिखाई दे रही है जिस--

यह पिक्चर में एक तलाब के किनारे का सीन दिखाया गया है।

व निर्मान कार्य को दिखाया गया।

यह पिक्चर में एक व्यक्ति नदी या तलाब के किनारे बैठा हुआ दिखाई दे रहा है।